यह एक अ अ कार दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो टाइप की वैन टाइप की वैन है।

यहं एकं बस स्टॉप जैसा कुछ दिख रहा हैं जहां बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है दुकानें है।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

अं नीचे चार कैमरे हैं उसके ऊपर तीन कैमरे है पीछे एक--

नकली फ्लावर पॉट रखा हुआ है नीचे भी कुछ है सील वगैराह समान रखा हुआ दिखाई दे है।

अ जो फोटो में भी दिख रहा है सामने से और कुछ अ एक लड़की का स्टेचू दिख रहा है पीछे।

मछली मार्केट दिखाई दे रहा है जहाँ एक औरत मास्क लगाये फोन पे बात कर रही है पीछे बैठ कर एक आदमी है।

डस्टबिन दिख रहा है एक डब्बे जैसा कुछ है।

व्हाइट कलर का एक आदमी जा रहा है इसके हाथ में रुमाल है।

अह कुछ पेपर कॉपी कुछ भी चेक हो रही है सर चेक कर रहे बता रहे हैं उसे कुछ।

यह एक मस अह कार कारखाना दिख रहा है जहाँ पर इधर अह जो आती है पत्तियां--

ये कैरेट जैसी बनी हुई है इधर इधर रोड जैसी और इधर भी कुछ चैन जैसी दिख रही है पट्टी बनी हुई बॉक्स में।

यह एक अह किचन दिखाई दे रहा है पीछे तोलने का तराजू है उसमें कटोरा रखा हुआ है।

अ फाड़ कर उनको सही तरीके से एक अ फर्नीचर जैसा बनाया हुआ है।

हां बाइक वाइक रखी हुई है इस साइड में कुर्सियां दिखाई दे रही है बैठने की और थोड़ा थोड़ा हरियाली जैसा दिख रहा गार्डन में।

यह एक बुक लाइब्रेरी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जहां पर बुके दिखाई दे रही है रखी हुई।

शोरूम जैसा कपड़ा पड़ा दिख रहा है।

आह बैलूनों से सजाया गया है फैन वगैरा दिखाई दे रहे है इधर एक बॉक्स जैसा कुछ है।

यह एक स्टूडियो दिख रहा है जहां पर फोटो शूटिंग हो रही है।

और वो दिख रहा है। चेयर रखी है टेबल रखी है। माला--

यह एक अ क्लास दिखाई दे रही है बच्चों की जहां एग्जाम दे रहे हैं बच्चे।